सामने फ्रंट पे ब्लू ब्लू कलर की मिरर लगी हुई हैं एण्ड बाहर बहुत सारी बाइकें साईकिलें खड़ी हुई हैं बहुत सारे बॉयज खड़े हुए हैं बैग वगैरा टांग के और साइकिल खड़ी हुई हैं और एक लेडी खड़ी हुई हैं पिंक कलर के कपड़े --

मकान बना हुआ है वाइट कलर का बड़ा सा मकान बना हुआ है ऊपर बालकोनी दी हुई हर फ्लोर पे ऊपर से ये प्लास्टर नई हुई है नीचे-नीचे हुई है वाइट कलर से।

के में एक बर मस्जिद बनी हुई है एक में कुछ लिखा हुआ है मस्जिद जो है वो बिलकुल पतली सी बनी है उसके मीनार दिए हुए है दो मीनार के ऊपर चाँद बने हुए पास में अ नारियल के बड़े-बड़े पेड़ बने हुए है।

एक दुकान का शटर लगा हुआ ब्राउन कलर का ए लाइट के तार दिख रहे लाइट के तार दिख रहे है स्पीकर दिख रहा है बड़ा-बड़ा आसमान में लगा हुए।

पर एक बड़ा सा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज लिखा हुआ है हलषगंज जा जहानाबाद लिखा हुआ है उसके ऊपर कॉलेज है बोहोत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है।